मॉल के अंदर बहुत सारे सोफे लगे हुए हैं।

पीछे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

ये एक दुकान है दुकान पर बहोत सारा समान रखा हुआ है।

प्रीमोकॉल और यहां एक सीढ़ी भी लगी हुई है।

और दो स्कूटियां भी खड़ी हैं।

यहां दो भगवान की तस्वीरें रखी हुई हैं।

चर्च के अंदर बहुत सारे लोग खड़े हैं।

और यहां लड़कियों ने बहोत सुंदर सिर पर फूलों की माला लगाई है।

और विंडो ए_सी लगा हुआ है।